कुछ नाव दिखाई दे रहा है। नाव पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। --

एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। सीढ़ी के ऊपर एक घोड़ा --

छोटे-छोटे घाँस जगह -जगह उगे हुए हैं। कई सारे --

बर्तन रखा हुआ है। लोहे की रॉड लगी हुई हैं। किनारे-किनारे लोहे की जालियां भी लगी --

दो स्टूल भी रखे हुई दिखाई दे रहे हैं। स्टूल पे तबला रखा हुआ है।

तथा दूरी एक और भी पेड़ है। वह पेड़ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा छत दिखाई दे रहा है। छत लोहे के --

तस्वीर में एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान --